और तीन-चार बकरियां अभी पानी पी रही है और पीछे में बहुत बड़ा-बड़ा --

और यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक का बैंक भी है और यहाँ पर बगल में भी और--

आते हैं बहुत सी चीजें के लिए आते हैं और यहां पर ऊपर में सिटी सेंटर सलून लिखा है और गोपालगंज भी लिखा हुआ है।

एसी सलून एसी सलून भी लिखा है और खुर्सी भी है लाल रंग का और --

लगता है कि यह एक विद्यालय है जहाँ लोग बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं और यहाँ पर गेट के ऊपर में लिखा है पूर्व माध्यमिक शाला तुरी डी --

यहाँ पर एक पत्थर से बनाया हुआ मूर्ति टाइप का मुझे दिखाई दे रहा है और पीछे का बैकग्राउंड ब्लर है इसलिए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है।

यहाँ पर ऐसा लगता है कि एक डॉक्टर है और एक मरीज है जो एक मरीज का--

जो डॉक्टर है वो खड़ा होके इनका इलाज कर रहा है और मशीन भी है इलाज करने वाला।

मशीन है जैसे लगता है सिलेंडर टाइप का बहुत बड़ा-बड़ा है उससे बड़ा है --

और लगता है कुछ-कुछ और भी पर हो रहा है और पीछे में बहुत बड़ा-बड़ा पेड़ पौधा है।

यहाँ पर बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं और जहाँ पर एक घर भी हैं और उसको पथरों से भी बनाया गया हैं।

लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग भी हे उधर और भी घर हे और हरियाली--